सेट पे एक टेबुल है बड़ा सा बहार दो ताला लगा हुआ है और डेस्क ये पीले रंग के कत्थे रंग के अंदर एक साइट पे छोटे-छोटे मूर्ति रखी गयी है जो काफी लम्बी लम्बी कुछ छोटी म लम्बी है।

कुछ हुए है जो सफ़ेद रंग की है सफ़ेद सामने एक बड़ा- सा पहाड़ है जो सफ़ेद दिख रही हैं।

सामने एक बड़ा सा मैदान है हरी घास है भुरे रंग की मिट्टी है चारों तरफ पेड़ पौधे हैं।